हॉस्पिटल है डेंटल हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल का नाम है चैतन्या डेंटल क्लिनिक ।

बहोत सी लड़कियाँ बैठी हुई है।

जो सफ़ेद रंग के कपडे पहने है और लाल रंग का दुपट्टा पहने हुए है ।

एक बीच में तालाब है तालाब में पानी भरा हुआ है छोटी छोटी घासे लगी हुई है।

और बड़ी बड़ी लम्बी लम्बी पेड़ है बिच में रास्ता है कुछ छोटे से पेड़ बनी है छोटे छोटे पेड़ के पौधे भी लगे हुए है कुछ बड़े है धुप है आसमान दिख रहा है।

तार लगा है दीवार अ कलरफुल दीवार है पीछे कुछ सामान रखा हुआ है। पांच छे अ पांच छे --

गुलाबी रंग की सजावट है उसे पे सफेद रंग से की गई है लाल रंग से की गई है।

में सुबह लाइन में पेड़ कटे हुए है नीचे दरवाज़े खिड़कियां लगी हुई है।

और कुछ ये पीले रंग के भी फूल है और आर्टिफीसियल हाथी बना हुआ है।

छत पे झूमर वाली लाइटे लगी हुई है पंखे लगे हुए है और लाइटे खरीद रखी है नीचे बैठने नीचे बैठने के लिए कुर्सियां रखी है मेज़ लगा हुआ है आर्टिफीसियल पेड़ लगा हुआ है पौधा लगा हुआ है जो हरे रंग का है।

हरे रंग की पेड़ है। यहां पर कुछ प्लेयर खेल रे है जो कई कलर के कपड़े पहने हुए है पीछे पेड़ लगा हुआ है बड़े-बड़े पेड़ हैं और छोटे-छोटे पेड़ है सोलर लाइट लगी हुई है और मैदान में --